जहां पे ढेर सारे आदमी खड़े हुए हैं।

ढेर सारा कुर्सी लगा हुआ है वाइट कलर का जिसपे ढेर सारे वैकटी बैठे हुए है पीला कलर का भी कुर्सी है।

तीन बड़ा बिल्डिंग है जो वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

बिल्डिंग है बड़ा बड़ा व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

ढेर सारा का अह कार्टून है।

टी_वी लगा हुआ है नीचे में कार्टून है घड़ी है।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पे बेड प कुत्ता सुताया गया है।